ये एक शॉप है। यहाँ पर अलग-अलग तरह की बनियान रखी हुई हैं बॉयज मेन्स की।

ये एक एनिमल्स का हॉस्पिटल है। एक डॉग है जो इंजर्ड है उसका --

ये एक जिम है जिसमें नीचे ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है। यहाँ पर डम्बल्स रखे हुए हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए।

कुछ बॉइज है जो अपनी अपनी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं।

और कुछ बलून रखे हुए हैं जो येलो कलर के हैं। ये एक कैफ़े हैं जो वाइट का नेम इसका लिखा हुआ है।

कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है। स्कूल पर इंडियन फ्लैग बना हुआ है।

और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है ब्लैक --

एक बच्ची है जो कुछ खा रही है। रेड कलर का रिफ्लेकशन आ रहा है।

टी-शर्ट ग्रे कलर की है और ब्लू कलर की पैन्ट है।

यहाँ पर दो तीन शोपकीपर बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। एक ने --

व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है और ग्रे कलर का जीन्स पहना है और काले कलर के जूते पहने हैं।

मजदूर है वो जो अपना-अपना कलेवर का काम कर रहे हैं।

दो-दो फोटो लगी हुई हैं। एक आदमी की है। एक औरत की है।

नीले कलर की शर्ट और सफ़ेद कलर की जीन्स पहनी है। कुछ पूजा कर रहे हैं ये लोग।

पहनी है। एक भैया है जिन्होनें काले कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ है।

जो सफ़ेद कलर का है। इसके नीचे जो है काले कलर की काले कलर की गेट है। इसमें लाल कलर की सीढ़िया बनी हुई है।

और नेम के उपर से एक ब्रिज गया हुआ है इसकी गेट बंद हैं।

पर्स में से पैसे निकाल रही है। बहुत सारे शॉपकीपर बैठे हुए हैं।

कैरेट रखीं हुई हैं। नीले कलर की हैं येलो कलर की हैं और लाल कलर की हैं।

ये एक बड़ी जगह है। यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पुलिस के बैनर गेट रखे हुए हैं जो --

हे येल्लो कलर के है। एक जो स्कूटी खड़ी है बाइक खड़ी है। व्हाइट कलर स्कूटी खड़ी है काले कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

और इन्होने येलो कलर की धोती पहनी हुई है। एक और हैंगे जिन्होंने येलो कलर का शॉल ओढ़ा हुआ है।

पीछे सफ़ेद कलर का पिलर है इन --

की जो शॉप है वो चद्दर की बनी हुई है जो वाइट कलर की चद्दर है और --